इस तस्वीर में एक केक नजर आ रही है जो की डॉल से बनी हुई है डॉल के दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं पीछे एक बड़ा टेबल रखा हुआ है।

यहां पर एक बड़ा खम्बा भी नजर आ रहा है। सामने एक नल भी दिख रहा है। अंदर कुछ डब्बे भी रखे हुए हैं। अंदर बहोत सारे लाइट भी जल र --